और इन दोनों का रंग ही लाल और सफेद लग रहा है।

ये आपको एक करियाने की दुकान देखने को मिल रही है।

जिसका नाम कृष्णा टायर ट्रेडर्स लगा हुआ है।

और इन स्लाइस के बाहर भी आपको बड़े से पेड़ भी देखने को मिल रहे हैं।

यह तस्वीर देखने में बहुत ही सुंदर लग रही हैं।

और इस तस्वीर में आपको एक लाल पोस्टर में ही इनका नाम देखने को मिल रहा है।

यह आपको एक घर के अंदर की तस्वीर देखने को मिल रही है।

जहां पर आपको एक बड़ा सा टी_वी और टेबल चेयर्स भी देखने को मिल रही हैं।

यह आपको किसी कपड़े की दुकान देखने को मिल रही है।

यह बस स्टैंड देखने में बहोत ही साफ सुथरा और सुंदर दिख रहा है।

यह पैलेस बहोत ही विशाल लग रहा है।

यह घर दिखने में बहुत ही सुंदर और विशाल लग रहा है।

यहां एक कार शोरूम की तस्वीर देखने को मिल रही है।

यह आपको एक लेख की फोटो दिखाई जा रही है।

और यह दृश्य बहोत ही सुंदर लग रहा है।

और यह रिसेप्शन में आप को एक पंखा और एक टेबल देखने को मिल रहा है।

यह टाइल देखने में बहोत ही सुंदर लग रही है और इसके नीचे अलग प्रकार के पत्थर भी लगे हुए हैं।

जहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस के बाहर कहीं वाहन लगे हुये देखने को मिल रहे हैं।

यह एक दरवाजे की दुकान है।

यह एक फिटनेस जिम के बाहर की तस्वीर हैं जिसका नाम बाजवा फिटनेस जिम लिखा हुआ हैं।